यहां पे एक बड़ा-सा रूम बना हुआ हैं जहां पे इ की ये सलून खुला हुआ है जिसका नाम थ्री सिक्सटी सैलून है और यह फैमिली सैलून यहां पर लिखा हुआ है और दरवाजे बने हुए हैं यहां सोफा लगा हुआ है।

यहाँ वहाँ पहाड़ के उपर बहुत सारे पेड़ उगे हुए है। पेड़ों पे आड़े आड़े पत्ते लागी हुए है। निचे बहुत सारी टेंट लगी हुई है। अलग-अलग प्रकार की टेंट लगी हुई--

बहुत सारी कुर्सियाँ लगी हुई हैं एक टेबल लगा हुआ है एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है ग्रीन कलर का बहुत सारी रेख रेख पड़ी हुई है बिजली की तारे लगी हुई हैं पीछे ए.सी. लगा हुआ है टाइल्स लगा हुआ है।

यह एक लांड्री बनी हुई है जहाँ बहुत सारे गमले लगे हुए हैं गमलों में हरे-हरे पौधे लगे हुए हैं।

गमले रखे हुए हैं बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं पेड़ो पे हरे - हरे पत्ते लगे हुए हैं| एक पेड़ जिसपे फूल लगा हुआ है सीढ़िया बनी हुई है लोहे का रोड लगे हुए हैं।

यहां पे एक बड़े से एकदम झरना निकल रहा है जिसमे बहुत सारा बड़ा से लेक बना हुआ है जिसमे बहुत पानी भरा हुआ है और एक पेड़ उगा हुआ है पेड़ पर हरे-हरे पत्ते लगे हुए है बहुत सारे पत्थर पड़े हुए है।

पेड़ो पे हरे-हरे -- पत्थर पे छोटी-छोटी पौधे उगे हुए है जिसपे हरे-हरे पत्ते उगे हुए है घास उगी--

बिजली की तारे लगी हुई पाइपे लगी हुई शीशे लगे हुए दरवाजे बने हुए टाइल्स लगी हुई है दीवाल पे कलर किये हुए है एक पोस्टर लगा हुआ है अंदर भी बहुत सारे रास्ते बने हुए है।

यहां पर एक घर बना हुआ है जो जिसके ऊपर बहुत सारे अलग-अलग प्रकार के डिजाइने बनी हुई है।